दीवाले दिखाई दे रही हैं तार दिखाई दे रहे हैं खंभा दिखाई दे रहें हैं।

इस पिक्चर मे हमे कुछ नीले कलर के मशीन लगा हुआ है दिखाई दे रहे है पीछे मे बहोत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है एक बांस दिखाई दे रहा है ऊपर तार लटका हुआ है खंभा दिखाई दे रहा है।